अगल-बगल में छोटे-छोटे बच्चे खड़े हुए हैं। उनन रेड कलर की सेन्टा क्लास की टोपी बाट् अ लगाई हुई हैं। टेज को बहोत सुंदर गुब्बारों से सजाया है।

बिल्डिंग दिखाई दे रही है। बिल्डिंग में बहोत सारे पेड़-पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पे अलग-अलग तरीके की लाइट्स भी लगी हुई है।

बोट में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग बाहर खड़े हैं यहाँ पर बेचने के लिए पानी-पूरी वगेरा के स्टॉल भी लगे हैं।

जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूं तो बहुत सारे फूल दिखाई दे रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं। कुछ सफेद लाल पीले हरे --

बिल्डिंग के उप्पर भी कुछ बोर्ड्स लगे हुए दिखाई दे रहे है ये बिल्डिंग बहोत बड़ी है सामने कुछ गाडियां खड़ी दिख रही है।

जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय छात्रावास अमरोहा --

उ अगल-बगल में बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है और बहुत --

अगल-बगल में बहुत सारे पेड़ है।

छोटे-छोटे पौधे लगे गए हैं।

बोहोत सारे कपड़े लगे दिख रहे हैं जींस पैन्ट छोटे बच्चों के कपड़े वन पीस गाउनस भी यहां पर दिख रहे हैं।

ऊपर वैल्यू एण्ड वैराइटी का बोर्ड लगा हुआ है। छोटे बच्चों से बड़े लोगों के सब कपड़े हैं।

फूल पीले लाल गुलाबी है।

दूर-दूर तक पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। छोटे-छोटे वहां पे कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं।